और यहाँ इसके बाल कटे हुये पड़े दिखाई दे रहे है पीछे की साइड भी एक काँच लगा हुआ दिखाई दे रहा --

बहोत सारे पेड़े ही लगे हुए हरे-भरे हरी-भरी हरियाली दिखाई दे रही हैं यहाँ रैलिंग लोहे की लगी हुई हैं यहाँ पे पेड़े चढ़े हुए दिखाई--